मानव यहां अक्सर खाने की चीजें लेने के लिए जाता है जैसे रोटी में बनाते हैं रोल चिकन डाल के--

सोने के लिए बिस्तर है बोहोत से आराम करने के लिए बिस्तर जो एकदम नरम से रहती है।

यहां हमारी सब मनपसंद चीजें हमें मिल जाती है गार्डन में एक चेयर भी है।

अपना इलाज करने के लिए हम सब अस्पताल जाते हैं वैसे ही यह भी एक अस्पताल है जिसका नाम संजीवन है ।